और उन्नी और उन्नी कपड़ा कोट पैंट कम्बल सिल्क सभी कपड़ो की धुलाई किया जाता यहाँ हर प्रकार के कपड़ो की धुलाई किया जाता है फिर शटर बंद --

सब कुछ लगाया हुआ है लोगो देखिए कितने बड़े आदमी कितने ज्यादा जनसंख्या में आए है या ट्रेवेल करने देखिए आप देख सकते है ।

कितनी श्रद्धालुओं यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं बहुत ही अच्छे से बनाया गया देखिये मूरत --

बहुत ही खतरनाक लाइटिंग होती है यहाँ आप देखिये जी पीछे जो आदमी लोग हैं --